आजू बाजू पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बिजली का एक खंबा भी दिखाई दे रहा है और नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

बहुत ही बढ़िया इमेज है बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है कुछ सीढ़ियाँ भी नजर आ रही है।

सामने एक घर भी नजर आ रहा है पानी मे तेरता हुआ पानी भी भर हुआ है ग्रीन पेड़ पोधे भी दीख रहे है।